कुछ ऑटो रिक्शा और कुछ साइकिल यहाँ पर खड़ी हुई है और यह एक पीले कलर की बिल्डिंग --

इसके पीछे भी कुछ सामान रखा हुआ है यह किसी मील का फोटो है जहां यह लड़का अन्दर खड़ा हुआ है|